जिसमें कुछ ग्रोसरी की शॉप दिख रही है कुछ बोटल पेप्सी की और कुछ--

पीछे कांच दिख रहा है जिसके ऊपर हमें ब्लू लाइट दिख रही है दीवार का कलर में व्हाइट दिखाई दे रहा है।

डोर का कलर यहां दिख रहा है हमें ब्राऊन साथ में ही एक बॉक्स दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ स--

कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर ग्रीन कलर के--

पत्ते वाले पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं सामने ही एक कार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

साथ में ही यहां पर हमें पेड़ दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है साथ में यहां पर हमें--

जिसमें कि पीले कलर के यहां पर फूट्स लगे हुए दिख रहे हैं।

वाला झाड़ी वाला एरिया भी दिख रहा--

और ये कुछ छोटे छोटे हमें यहां रेड कलर के गमले दिख रहे हैं साथ में ही फ्यूल स्टेशन का कलर वाइट दिख रहा--

दिख रहा है जिसमें हमें घनी सी रात--

साथ में ही पीछे हमें ब्लैक कलर का --